एक लंबा सा पोस्टर है। जिसपे बच्चा किसी चीज की शिक्षा दे रहा है। एक आदमी गाड़ी चला रहा है। गाड़ी का रंग लाल है ।

एक आदमी जो कि कुर्सी पर बैठा है।

कॉफ़ी सी.ओ.इ.एच.ए.एस.ए. नाम से है।

समुन्द्र का नज़ारा है सूरज डूब रहा है हरे भरे पेड़ हैं एक छोर पे एक नाव खड़ी है नाव के ऊपर --